पीछे नीला आसमान देखा जा सकता है | व्यक्ति के चारों तरफ बोहोत सारे फूल सजाए गए हैं और यह एक व्यक्ति है जो ट्रैक्टर को चला रहा है।

यहाँ पे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए है और जिसके साइड-साइड बहुत सारी वस्तुएं लगी हुई हैं।